यह गार्डन है जो की बहुत ही प्यारा-- यहां पर बहुत स्सा -सार फूल लगे हुए हैं जो की फुल का कलर पिंक हरा और गुलाबी--